में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यह एक नर्सरी है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल उग रहे हैं।

ऊपर अ एक बराबर में दुकानें हैं और ऊपर छत ए पर दो विंडो और गेट --

व्हाइट कलर की गाड़ियां बराबर में एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिस --

यहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे और झील दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा और सुहाना मौसम दिखाई दे रहा है और ऊपर बहुत ही अच्छे बादल छाए हुए हैं। बहुत सब --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

यहां पर एक लड़का व्हाइट कलर की टी शर्ट और जींस और रेड कलर का बैग टांगकर खड़ा हुआ है जिसकी परछाई पानी में दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारी चेयर्स रखे या पंखेज लगे या लाइट्स जली या विंडोज हैं और--